एक औरत बगल में खड़ी है साड़ी पहने हुए है।

दीवारें इसकी सफेद कलर की हैं।

सामने वॉल बैनर चिपके हुए हैं।

सामने वाला लंबा सा बोर्ड है जिस पर आइसक्रीम ल लगी हुई हैं।

यह एक मेट्रो के अंदर का चित्र है।

इसमें छतों पर हैंडल लटक रहे हैं रेड कलर के।

सामने बड़े से पेड़ की एक टहनी है।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

जमीनें इसकी कच्ची मट्टी की हैं।

और उसके कोने में जालीदार खिड़कियां बनी है लाइन से।

इसकी छतों पर रेलिंग लगी है लोहे कि।

रंग बिरंगे बहोत सारे फूल लगे हैं ब्लू येलो ।

ग्रीन कलर का बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है।

ऊपर ग्रीन कलर का बड़ा सा बोर्ड लगा है।

जिसके जमीनों पर टाइल्स बिछा हुआ है।

जिसमें सामने वालि लम्बी लम्बी बिल्डिंगें बनी हुई हैं।

लाइन से रेड कलर के बड़े बड़े गमले है।

मूर्ति को ऑरेंज कलर का लहंगा पहनाया गया है।

जिसके अंदर मूर्ति यह फोटो रखा है।

इसमें सामने की दीवारें सफेद कलर की है।

बाहर वॉल साइड लोहे का दरवाजा है बड़ा सा जालीदार डिजाइने बनी है।

सामने वह लोहे का खंभा लगा हुआ है।

के चारों ओर खंबे लगे हैं गोलाकार के--

ग्रीन कलर का बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है।

उसके ऊपर रंग बिरंगी झालर लटक रहे हैं।

बगल के दीवार पर बड़ा सा शीशा लगा हुआ है।

दीवारों पर चित्र बने हुए हैं।

सामने वॉल टीन की छत है लंबी सी।

सामने एक आदमी खड़ा है येलो शर्ट पहने--

पर कोने कोने में गमले लगे हुए हैं।

जमीनों प छोटी छोटी मूर्तियां लगी हुई है।

जिसमें बहुत सारी स्लाइडें ल लगी हुई हैं।

सामने ब्लैक कलर का बड़ा सा बोर्ड है।

और बगल में टीन के बड़े बड़े दरवाजे हैं जिन पर क्रॉस लगा है।

शीशे और लोहे की रैलिंग्स लगी हुई हैं।

एक बाइक का बोनट खुला हुआ है।

ग्रीन कलर के बड़े बड़े पेड़ लगे हैं।

जिसमें सामने वाल छोटा सा एक रूम बना है।

चर्च का एक निशान बना हुआ है रेड कलर में।

सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा है ब्लू कलर का।